इसका जो डोर है वह बहुत बड़ा है।

एक बॉल है एक बोतल भी है और चार स्पून है एक टीसू पेपर है।

यह दुकान है यहां एक फ्रिज है पानी का बोतल भी है और ठंडा भी है।

ये एक कपड़ा का दुकान है जो व्हाइट कलर के अह बने हुए हैं।

इसमें बहुत सारे शर्ट दिख रहे हैं और टी शर्ट भी दिख रहे हैं जो ब्लू कलर के हैं व्हाइट कलर के हैं पिंक कलर के हैं फिरोजी कलर के हैं।

इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं।

उश्के बगल में ब्लू कलर का थैली बैग भी दिख रहा है।

इसका जो फ्लोर है इसमें वाइट कलर की टाइल्स बिछाए गए हैं।

इसमें एक मिरर भी है।

ये गार्डन है जिसमें पेड़ लगा हुआ है और पौधा भी--

खिड़की में कर्टेन्स लगे हुए हैं।

हुआ है इसमें कारपेट लगा हुआ है वो रेड कलर का है।

नेवी ब्लू कलर के है।

और एक व्हाइट कलर का बोर्ड भी है।

ए इसका जो फ्लोर है वो अह ब्राउन कलर के कारपेट से बना गया है।

जिसपे शिवालय लिखा हुआ है।

एक मटका है एक है और स्कैनर भी है।

एक इसके पीछे पत्थर भी है।

और इसके पास बाहर पखल बहुत बड़ा सा चट्टान भी है।

ये दुकान है जो कांच से बना गया है उस--

एक ठेला है। उस ठेले पे कुछ सामान है जो वाइट कलर की बोरी में भी है ।

इसमें रामदेव बाबा का फोटो भी है जो ग्रीन कलर से पेंट किया गया हैऔर ऑरेंज कलर का पटे से--